और इस इसके इसने व्यक्ति खड़े हुए हैं जो काले रंग का पैंट पहने हुए हैं और उजला रंग का शर्ट पहने हुए है और इसके बगल में एक और स्मारक है जो भग भगवान बुद्ध का लग --

दुकान है और उस दुकान में केले बिक रहे हैं और उस दुकान में एक व्यक्ति खड़े हुए हैं ।